और दूर दूर तक पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ--

मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा हाल है जिसमें--

चारों तरफ फोन खंभे लगे हुए हैं।

मै देख पा रही हूं एक बहोत बड़ा बंगला है जो--

घर है जो ग्रीन कलर का है उसके बगल में जो घर है वोइ --

और चारों तरफ खुला हुआ हैं ऊपर काला बादल छाया हुआ है।

चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है हरा हरा--